और यहां पर एसी दिखाई दे रही है जो सफेद रंग का नजर आ रहा है दीवार जो है क्रीम कलर का है वही सिलींग लाईट्स लगी हुई है।